और एक पहाड़ी नज़र आ रही है बहुत दूरी पे भी कुछ धुन्दला-धुन्दला सा--

यहां पर एक जिम दिखाई दे रहा है जो कि उसके अंदर बहुत सारी मशीने रखी हुई है बाइसिकल जैसी जो की एक्सरसाइज करने की मशीन है और--

यहां पर एक दो शटर वाला दुकान है उसके ऊपर एक बिल्डिंग है दो जगह गेट लगा हुआ तथा ट्यूटोरियल्स करके कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर में--